आदमी दिखाई दे रहे है। पेड़ दिखाई दे रहे है। आसमान दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में एक मॉल दिखाई दे रहा हैं। इसमें रेक्स दिखाई दे रही है।

बोटल्स दिखाई दे रही हैं। दिखाई दे रही है। लाइट्स दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

बॉउन्ड्रीज दिखाई दे रही है।

सोफ़ा दिखाई दे रहे है। पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। पोट दिखाई दे रहे है। प्लाट दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में हमें रोबोट दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग दिखाई दे रही है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस रंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लाइट दिखाई दे रही हैं। पिलर्स दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बाइक्स दिखाई दे रही --